यहाँ पर मुझे एक फ़ोटो दिखाई दे रही है जिसमें बादल दिखाई दे रहे हैं जोकि बारिश के मौसम के दिखाना चाह रहा है।

और बोहोत से लोग स्टेडियम की सीढ़ी पे बैठ के इस क्रिकेट को देख रहे हैं।

यहाँ पे बोहोत सारे घर बने हुए हैं और एक घर के सामने एक बड़ा-सा पेड़ लगा हुआ है जिसके नीचे दो लोग बैठे हुए हैं और दो लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ मेरे सामने एक इमेज दिखाई दे रही है जोकि एक पावर हाउस की है। यहाँ पे बिजली के खंबे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं जोकि तार से कनेक्टेड हैं।